जिन्होंने गुलाबी कलर की साड़ी पेहनी है।

बगल में एक और भैंस दिख रही है।

रुआवज़ा हैं कोल्ड ड्रिंक हैं।

बोहत सारी क्रैटो के ऊपर सड़क दिख रही है कुबरी हुई --

कुछ पराठे रखे हुए है उसमें तीन--

उसमें कुछ सीढ़िया भी हैं।

एक गड्ढे में एक आदमी कुछ काम कर रहा है।

बोहत छोटी छोटी सी चीजे दिख रही हैं बोहत --

में की छोटे-छोटे घास हैं ।